और प्लेट के ऊपर रखा हुआ है सामने दो ग्लास भी दिख रहे हैं और यहां मार्बल की टेबल के ऊपर रखा हुआ का दृश्य है।

और यहां अंकल ढक्कन को हटाकर कुछ कार्य कर रहे हैं बिजली का।

इसके बगल में कप भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक भईया देखे जा सकते हैं।

यहां पर दो खंभे भी टंगे हुए है।

यह दृश्य किसी स्कूल का दिख रहा है। जहां पर काफी सारी बड़ी बड़ी वृक्ष दिख रहे हैं।